इस पिक्चर मे मुझे एक डिस्को क्लब दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहोत उ कुछ गर्ल्स डास कर रहीं हैं।

और कुछ लोग उसकी साइड देख रहे हैं जिस के पीछे लोहे की कुछ खिड़कियां भी दिखाई दे रहीं हैं जाली वाली और एक दीवाल दिखाई दे रही है टेबल दिख --

ऑफिस में और एक दीवाल पे एक घड़ी भी दिखाई दे रही है और उसके पीछे खिड़कियां दिखाई दे रही है नीचे फर्श ग्रीन कलर कि फर्स दिखाई देरी है टेबल दिखाई दे रही है और छत --